एक में ग्रिल में लगा है ऐसा लगा की दरबार नजर आ रहे होंगे गेट थोड़ी सी जो है खुली हुई है नीचे की तरफ पड़ी हुई है ये काफी धुप लगी हुई है ऐसा लग रहा है दिन के समय का तस्वीर है इसलिए यहाँ पे जो वो काफी कम नजर आ रही है अकेले जा --

ये खूबसूरत एक जगह है और ये जगह पे ऐसा लग रहा है ये हॉस्पिटल है हॉस्पिटल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है और यहाँ पे रास्ते के सड़क में हॉस्पिटल रहने के कारन हॉस्पिटल रहने के कारन आस पास के लोगो को उनको काफी सहायता मिलती है और --